यह दुकान दिख रही है यह दुकान में रात का नजारा लग रहा है। लाइट जल रही है ऊपर दो-तीन आदमी सामान खरीदते हुए सामान सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं स्कूटी खड़ी हुई बाहर।

ऑल एक्सेस ] बुद्धा और कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है | सामने बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही | कुछ साइकिलें खड़ी हुई दिखाई दोनों साइड से जीना बना हुआ दिखाई दे रहा है --

में मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ऊपर बिजली का तार दिखाई दे रहा है।